बहुत लोग आते है घूमने के लिए बड़े- बड़े लोग भी आते है।

बाल को काटते है हम लोग बाल यही कटाने के लिए जाते है बहुत अच्छा लगता है इस सैलून में।

बहुत भीड़ होता है इस सेलून मे बहुत ही अच्छा लग--

ये एक बहुत ही बड़ा समुन्द्र है जोकि इस समुन्द्र में बहुत ही ज्यादा पानी है और इस समुन्द्र में बहुत सारे सुविधाएं है नाव को रखा गया है।

बोहोत्त ही अच्छा मूर्ति बनाया गया है जो कि मूर्ति देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और पिलर देने से घर का मजबूती ही ज्यादा होता है और बहुत ही बड़ा बनाया जा रहा है बहुत ही इंजीनियर डिजाइनिंग से बनाया जा रहा है ये घर को।